ज-जो की किसी मट्ठ में रखी हुई दिखाई दे रही है मट्ठ का आधा दॄश्य है।

चिप्स और कुर-कुरे के पैकेट्स जिसके पीछे एक मिक्की माउस का फोटो भी बना हुआ है।

फर्श की इस वक्त धुलाई भी हो रही है इस पे काम हुआ हुआ है।

अअअ गेट दिखाई दे रहा है उसके पीछे की तरफ भी एक इसी गेट के सामने से पीछे की तरफ एक और गेट दिखाई दे रहा है।

वह बाल दाढ़ी लिखा हुवा है कुछ कैची वगैरा का भी दृश्य दिखाई दे रहा है साफ सुथरा है।

हम-अअ दिखाई दे रहा है दुकान का दृश्य दिखाई दे रहा है।

और यह उसी समय का दृश्य दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ कुछ बोर्ड दिखाई दे रहें हैं ये |